जिसका सर बाहर है और इसके दो हाथ-पैर भी दिख रहे है और ऊपर इसका जो कमर है काफी बड़ा पत्थर के जैसा लग रहा है और इस पर छोटी-छोटी चट्टानों सी भी बनी हुई है यहाँ पर।

आज इस पे पेंट हो रहा है अंदर पेंटिंग रखी है और ऊपर काफी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जो कि व्हाइट कलर मे है और बाहर जो है थोड़ी सी लाइनिंग ग्रीन कलर मे भी आ रही है कुछ लोहे का सामान भी रखा हुआ है।

ये एक बहुत बड़ी नदी है और नदी मे ये जो है काफी सारा पानी है बहुत बड़ी नदी है बहुत ऊंचाई तक दूर तक दिख रही है ये।

ये एक पार्क है और पार्क मे दो सड़के बनी हुई है दो रास्ते बने हुए है सड़के पे कलर हो रहा है जैसे की हल्का येलो है एंड बैंगनी कलर है इस पर एक लड़का खड़ा हुआ है।

--पहना हुआ है चारों एक ही पोजिसन मे भाग रही है और पीछे ग्राउन्ड और बना हुआ है जो कि चारों बाउंड्री बनी हुई है हल्की-हल्की घास है हल्का-हल्का स पत्थर टाइप का भी कुछ है और यहाँ पर जो सड़क का कलर है वो रेड कलर मे एंड व्हाइट कलर की पट्टिया आ रही है इस पर।

मार्केट है और मार्केट मे जो है शॉपे बनी हुई है यहाँ पर और कुछ बाहर बाइक्स और स्कूटी भी खड़ी है और बाहर एक लड़का भी खड़ा हुआ है।

एक फील्ड है और इस फील्ड में जो है एक कार खड़ी है जोकि व्हाइट कलर में है| यहाँ एक लड़का भी खड़ा है जिसका केवल ब्लू कलर का टी-शर्ट दिख रहा है| सर नहीं दिख रहा हाथ दिख रहे हैं| हाथों में एक मशीन --

और जो सामने कुछ झूले हैं जिनके ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं| दो-चार बच्चे हैं जोकि झूलों पर बैठे हुए हैं और साइडो में काफी बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और इधर साइड में कुछ बना हुआ--

ये एक क्लास रूम है और इसमें जो है यहाँ पर काफी सारी ब्रेनचेज बिछी हुई है और यहाँ पे सबसे पहली ब्रेंच ग्रीन कलर है और बाकी सब का सेम कलर है।